यहां पे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

रस्ता भी टाइल्स से बना हुआ है।

यहां पे दो तीन बिजली के खंभे लगाए गए हैं।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

यहां पे बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बिल्डिंग है।

तीन टेबल दिखाई दे रही है।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

ये यहां पे एक टेबल भी है टेबल के ऊपर हरे कलर का कपड़ा रखा हुआ है।

यहां पे दो क्यू_आर कोड भी है।

यहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

एक कैमरा भी है।

यहां पे बहुत सारे लाइटें जल रही हैं।

यहां पे बिजली का खंबा भी है।

आधे औरत है आधे आदमी है।

यहां पे बहुत सारे लाइटें जल रही हैं।

यह एक ग्राउंड है यहां पे कुछ आर्मी मैन दिखाई दे रहे हैं।

टेबल के ऊपर बहुत सारे खाने के सामान रखे गए हैं।

यह एक संघमित्रा योगा एंड मेडिटेशन सेंटर है।

यहां पे बहुत सारी लाइटें लगाई गई है।

यहां पे एक बहोत बड़ा पेड़ भी है।

बहुत सारे आदमी भी है।